इसके साइड में बहुत सारा हरा भरा पेड़ है।

यहां एक अल्बेस्टर का छत से छारा हुआ है।

इस मछली के मुंह में एक लंबा जैसा है ये मछली बहुत पतला पतला है।

यहां इस बच्चा सब दौड़ रहा है वहां सफेद कलर का लकीर दिया हुआ है।

यहां बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है यहां आगे में बहुत सारा बैलून लगा हुआ है जो पीला लाल और नीला कलर का है।

बहुत सारा पंखा भी लगा हुआ है जो काला कलर का है।

यहां दो गाड़ी भी है यहां एक औरत दिख रही है।

यहां एक आदमी दिख रहा है जो हेलमेट पहन के अंदर जा रहा है।

यहां बहुत बड़ा बड़ा दो पत्थल है जिसके नीचे दो आदमी हैं।

नीचे में एक टेबुल भी है यहां बहुत सारा शर्ट रखा हुआ है।

साइड में दो बहुत बड़ा-बड़ा खंभा दिख रहा है जिसमें ये लाइट लगा हुआ है।

एक कलर का पैंट भी पहना हुआ है दो आदमी।

यह एक हास्पिटल है। जिसके ऊपर में ओम शिव साई हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

यहां बीच में एक मेन रोड गया हुआ है यहां एक बच्चा आदमी साइड से जा रहा है।

एक हैढ फोन दिख रहा है जो कान मे लगाने वाला है।

पीला कलर का डिब्बा भी दिख रहा है।

एक बच्चा टोपी लाल कलर का पहना हुआ है यहां एक बेंच भी रखा हुआ है।

बहुत सारा औरत आदमी पानी में डूबे खड़ा है।

यहां बहुत बड़ा नदी है यहां बहुत सारा हरा भरा पेड़ दिख रहा है।

पीछे में इलाहाबाद बैंक लिखा हुआ है दो आदमी हैं एक आदमी बैठा हुआ है।

ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा लाइट लगा हुआ है अंदर में दो आदमी एक औरत दिख रही है।

और एक नींबू भी रखा हुआ है।